ये जो देख में आ रहा है कि एक मंदिर है।

ये एक मोबाइल का दुकान हो दुकान है जहां पे इयर कॉर्ड चार्जर बैटरी --

बाकी के रोड भी है साइड में पेड़ पौधे भी लगा हुआ है ये भुवनेस्वर रेलवे स्टेशन ही है।

और दूसरी स्टूडेंट लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं।

शायद हार्डवेयर का कुछ सामान भी रखा हुआ है।

इसको देखके लग रहा है कि ये कुछ रिसॉर्ट जैसा है।

और आगे में एक नदी है बोटिंग वोटिंग शायद हो रहा होगा।

ये स्टार्टिंग एरिया कुछ मंदिर को जाने के लिए है।

लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है जोधपुर का है।

और वो पूरा अस आसमान के नीचे भी दिख रहा है।

मगर ये स्टेशन का जो सब चेयर भी पड़ा हुआ है वहां पे बोर्ड में भी स्टेशन है।

बाकी ये तो एक कॉमन सरकारी ऑफिस है।

ओर साउथ साउथ साइड मे ही है जो तबला रखे है।

ये एक बौद्ध का स्थान है जहां पे बौद्ध का हमारा बुद्ध जो होते हैं।

यह एक मतलब कि मंदिर जैसा है जैसा हम बोलते हैं बुक स्टोर ।

ये सिपन जमीन है जो मां का सरस्वती मां होते हैं वो आते हैं।

और बाकी यहां पे छोटे बच्चे का बुक भी पड़ा हुआ है।

खड़े है और उनका काम कर रहे--

जो क्राइम करते हैं उन्हीं के लिए ही है।

और जू कम पार्क जैसा लग रहा है और ऊपर हाथी का स्टेचू रखे हुए हैं।

यहां पे सोलर पैनल रखा हुआ है ऊपर मयूर का स्टेचू रखे हुए हैं।

मतलब कि सूरज निकल रहा है कि सुबह का टाइम होगा।

बाकी जो पंजाबी होते हैं उनका जो स्टैचू वगैरा होता है उनका जो सीग अ जो सिग्नल होता है वो सब --

विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहीं पे रुकते होंगे।

उसका नाम है पत्रो मोटरो गरज ।

मगर मुझको देख के लग रहा है कि ये कुछ बैंक वगैराह होगा।

ये खुर्दा जिले का मुख्य चिकित्सालय है।